एक व्यक्ति जो ऑटो चला रहे है एक ऑटो है।

श्री प्रकाश रेस्टोरेंट लिखा हुआ है एक व्यक्ति अंदर की और घुस रहे है जॉकेट पहना हुआ है।

और रेड कलर के कुछ दिख रहे है। एक बड़ा सा ब्रिज भी है।

एक गेंदे के फूल है जो रेड कलर के दिख रहे--

को झण्डे है रंग-बिरंगे है।